यहाँ एक नदी सी दिखाई दे रही है जिसका कलर पानी का नीला दिखाई दे रहा है और यहाँ पहाड़ भी दिखाई दे रहे है थोड़ी देर पर एक खंबा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ--

एक स्टोर दिखाई दे रही है वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर दो तीन दुकानें दिखाई दे रही है बाहर स्टूल दिखाई दे रहा है लाल--

कई हिरण नजर आ रहे है जो जानवर है और यहाँ पर कई बड़े-बड़े से पेड़ नजर आ रहे है और हिरणों के अमम.... आस-पास दीवाल--

--पर एक ठेले पर एक बड़ी सी मछली दिखाई दे रही है और रोड के उस ठेले पर एक टब भी रखा हुआ है और नीले कलर की पन्नी भी रखी हुई है।

दो व्यक्ति दिखाई दे रहे-- एक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है और यहाँ ये मछलियों को काट रहे है अधिक मछलियां कटी कटाई पड़ी हुई है।

साइड मे और यहाँ छोटे-छोटे हरे कलर के दो तीन पौधे दिखाई दे रहे है और यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर भी--

और एक कार भी दिखाई दे रही हैं और थोड़ा स आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और एक घड़ी दिख रही हैं दीवाल पर और हरे कलर के पर्दे दिख रहे हैं औ पीछे सजावट हो रखी हैं।

--और यहाँ पर दो ठेले भी दिखाई दे रहे हैं जो की फल के ठेले हैं और ठेले में एक व्यक्ति बैठा हुआ भी नजर आ रहा है और यहाँ पर पेड़ --

और उसके पास में एक पेड़ और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है ।

और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति ने केप लगा रखी है और साइड मे बस के कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं और थोड़ा आसमान भी दिखाई--

और पत्थर के दाएं बाएं हरे कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पत्थर के आसपास कुछ पक्षी उड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और आसमान का कलर नीला दिखाई दे रहा हैं।